जिसमें कि बहोत सारी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और कहीं जीपे भी दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर बहोत सारी हरियाली और--

पंखे इत्यादि सामग्रियां पड़ी हुई दिख रही हैं।

मुझे इस चित्र में एक बहोत बड़ा डैम नजर आ रहा है।

जिसमें की काफी सारी किताबें पड़ी हुई दिख रही है।

एक बहोत बड़ा शिवलिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर बहोत सारे बलून --

और दो आर्टिफिशियल हिरने भी हैं।

और काफी सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसके बाहर काफी सारी लाइटिंग्स और काफी सारी चेयर्स भी पड़ी हुई--

ये एक चित्र में ये एक बहोत बड़ा खुला हुआ--

जिसमें की लकड़ी की सजावट की--

दे रही है जिसमें की पैथोलॉजी से संबंधित काफी सारी मशीनें भी--

एक मैकेनिक की दुकान दिखाई दे रही है।

चित्र में सफेद कलर की स्कूल की एक बिल्डिंग दिखाई--